यह इस इमेज में चार शटर लगा हुआ है जिसके आगे पारस इंडिया लिखा हुआ है।

इस इमेज पर दस ग्यारह आदमी है जो प्रे कर रहे हैं।

बीच के तीन लोग ने फादर का कपड़ा पेहना हुआ है और वो तीनों प्रे कर रहे हैं साथ में।

कोने में बादल बहुत ज्यादा है।

और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

आगे दो बॉक्स है एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का।

और एक पेर के सामने एक बाइक पार्क किया है।

और ये रूम येलो कलर का बना हुआ है।

गेट का कलर ग्रीन रेड ऑरेंज है।

इमेज़ पर बहोत लंबा सा एक बिल्डिंग है।

उसके सामने एक पेड़ है।

इस इमेज पर दो टेबल रखें हुए हैं।

और उसके आगे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और उसके लेफ्ट साइड पर कपड़े सुखा के रखे हुए हैं।